और सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए है और पंडाल को भी बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है और देख सकते है साइड में कई प्रकार के लाइट लगे हुए है जो की देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

और ये बस कही जाने वाला हैं बहुत ही बड़ा बस हैं देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बस एक दम